एक व्यक्ति मोबाइल हाथ में लेकर जा रहा है एक व्यक्ति आ खड़ा हुआ है पास में ही और भी घर है।

यह एक बुक्स की दुकान है जिसमे कही प्रकार की बुक्स रखी हुई है दो बैैैठे हुए है।